मूर्ति है वो भी लगा रखी है और साइड में--

ये एक जगह है जहां पे कुत्तों को रखा जाता है।

ये सर्कल्स बना रखे हैं सीमेंट से और उसके ऊपर फवारा लगा रखा है जिससे पानी बाहर ना गिरे।

और नीचे ब्लू कलर के जींस पहनी हुई है।

बना रखा है और जिसके अंदर एक बच्चा दिखा रखा है शेर का।

और उसे पोस्टर के साइड में तीन ऐ_सी भी दिखा रखे हैं।

एक बहोत बड़े साइज की मशीन है और इसके आगे कुछ फैन जैसा लगा रखा है।

ये कोई हाउस की फोटो है वो दिखा रखी है।

और सभी हाथ जोड़ कर बैठे हुए है।

और साइड में एक ड्रैगन की फोटो भी है।

ये एक फोटो दिखा रखी है और एक ये लड़का बैठा हुआ है।

ये अभी एक रूम दिखा रखा है और इसमें एक नया फर्नीचर कुछ रखा हुआ है।

और इस के अंदर और बाहर बहोत सारे बड़े-बड़े पेड़ भी दिखा रखे है।

और उसके साइड में बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह भी रखे हुए हैं कि ये बहुत बड़े बड़े बहुत --

ये एक प्यारी सी गाय दिखा रखी है।

और उस पे भी कुछ ओढ़ा रखा है रेड कलर का।

ये किसी पुल के नीचे की कोई फोटो है और बहोत सारी यहां पर भीड़ है।

एक दो बड़े थर्मल पावर प्लांट दिखा रखे हैं जहां बिजली बनती--

ये जो पर्दे हैं वो लगा रखे हैं।